आ उ बगल में भी लगे है कि आदमी ढेर मनी बैठाउल है आ इ साइड भी दूर-दूर में भी पहाड़ ही नजर आ रहबी है।

इ भी इ भी एक पारक हेय पारक के गेटवा पर हेय दुगो पाया सनक गेट भी हेय अ गेटवा के ऊपर बोल भी लगल हेय।

बड़ा छता है दोगो आदमी हई एगो आदमी टोपी पेहेनले हई लगए के म छतवा के धोवो में लगल हई आ एगो बाल्टी हई लाल रंग के उजर रंग के बाल्टी है पे है।

रंग बिरंग का मिठाई भी है भूंजा भी रंग-बिरंग का है पेपर पर रखा हुआ है काउंटर भी है लगता है उ जो अ काउंटर उज्जर रंग का काउंटर है मिठाई तीन चार गो है।

छेना मिठाई रसगुल्ला भी है।

टीवी है एवं घर है | लाइट है ऊपर भी जाला जैसा लाईट है।